हरा हरा पेंट में हो गइल बा कपड़ा से कपड़ा वाला तिरपाल से ढकल बा।

सुन्दर लागता ग्राउंड भी है चारो तरफ पेड़-पौधा हैं बहुत सुन्दर है।

बहोत सुंदर पुल लगा था भैया पुल पर रैलिंग बहुत सुंदर है। इसके पुलवा में नदी टाइप का दिखाती तलाब टाइप का है भैय्या जी।

जिसमे झाड़ी ही झाड़ी हैं बहुत सुंदर नजारा हैं| रेलिंग का लाल है भैय्या।

यह ग्राउंड है घास होने के कारण दौड़ने पे चो गिरने पर चोट ओट नहीं लगती।

बहुत सुन्दर गेट ह भइया गेट के आगे पीछे पेड़ पौधा बहुत सूंदर है और गेट के आस पास बहुत साफ़ सफाई है भइया।

फंवारा भी सुंदर है नीले-नीले लाइट में फ़ुवारा बोहोत सुंदर लग रहा है पीछे की दीवाल पे रेड लाइट बोहोत सुंदर है।

फूल खिललत है यहां और बहुत सुन्दर नजारा आसमान साफ सुथरा दिखाई देत --